यह मीनार का । इस मीनार पर एक घर --

का पिलर उठ रहा है। ये पिलर पर शटरिंग किया गया है। इस पर लेबर मिस्त्री काम कर --

यहाँ पर कोई उत्सव हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कुर्सी टेबुल लगाए गये --

यह तलाब काफ़ी बड़ा है। इस तैलाब में बहुत सारे पानी है। इस तैलाब के चारों और बड़े-बड़े बिल्डिंग --

इस तालाब में काफी सारे मछली भी है इनका आदमी इस तालाब की मछली को पकड़ कर खाते हैं।

यहाँ पर मशीन में पेपर की छपाई होती --

यह भवन काफ़ी बड़ा है। इस भवन पर लिखा हुआ है ए.के. विद्यालया। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे पढ़ने आते हैं।

यहाँ पर अनेक सारे गेलन रखे गए हैं यहाँ पर इस्टाम्प मनाया जा रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे इस्टाम्प भी --